तीन तो कुर्सी है एक टेबल है।

यह एक क्लास है जहां पर कई सात्र छात्र पढ़ रहे हैंऔर सभी छात्र के पास बैग है एक टीचर पढ़ा रहे हैं।

वाइट बोर्ड लगा हुआ है बहुत सारे फैन लगा हुआ है।

यह एक किराने की दुकान है।

और जिम वाली मशीनें रखी हुई है और येलो कलर का पता नहीं क्या रखा हुआ है।

जिसमें साथ में गणेश जी हैं दो लोग पूजा कर रहे हैं।

इसमें एक आदमी नीचे खड़ा हुआ है नीचे पूल है बना हुआ है।

पीछे किताब कॉपी और स्केच पेन वगैरह बिकता है।

एक टेबल है दो कुर्सियाँ हैं और दो कुर्सियाँ साइड में हैं।

लोग नीचे चल रहे हैं एक स्पलेंडर मोटरसाइकिल है।

तीन-चार रिक्शा खड़ा है।

यह एक गांव है जिसके बीच में एक तालाव बना हुआ है लोग छठी मैया का पूजा कर रहे हैं।

इसमें मेंस लोगों का दाढ़ी बाल बनाया जाता है।

यहां पे तीन मोटरसाइकिल लगा हुआ है।

यह एक जिम है जहां पे लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं एक्सरसाइज की छह सात मशीनें लगी हुई है।

और दो-तीन डंबल रखा हुआ है एक फायरमैन वाली मशीन रखी हुई है.

और पीछे बिल्डिंग्स बनी हुई है।

यह एक चिकन चैनटर है जहां पे--

यह एक नेस कैफे का कप है।

साइड में पेड़-पौधे हैं।

ऊपर लिखा हुआ है द ग्लास बॉक्स --

बैंक की लिखा हुआ है फ्रेश लिखा हुआ है।

जिसके पीछे एरोप्लेन खड़ी हुई हैं।

नीचे हल्दी का पेड़ रखा हुआ है।

पंखा लगा हुआ है लाइट लगा हुआ है ए_सी लगा हुआ है बहोत सारी।

इसम बहुत सारा साड़ी टंगा हुआ है।

दो चेयर लगा हुआ है।

जिसमें घर के अंदर का --

इसका फर्श में प्योर टाइल का--

मूर्ति बगे मूर्ति और--

और एक लोहे का स्टैंड लगा हुआ है।

जहां पे एक मोटरसाइकिल लगा हुआ है।

नदी के किनारे पे दो महिलाएं--

यह एक हवाई जहाज है।

एक बिल्डिंग भी बना हुआ है।

जिसमें काफी सारे बच्चे खेल रहे हैं।

यह एक नाटक मंडली है।

उसके पीछे एक स्टेज बना हुआ--

पीछे ब्लैक कलर का पर्दा है।

तीन महिलाएं नियुक्त कर रही है।

एक मैडम ब्लैक कलर की कुर्ती पहनी है।

दो पेड़ हैं एक ट्रांसफार्म है।

टेबल है बेंच है और चेयर है।

शीशा पे भी एयरटेल लिखा हुआ है।

छत पे काफी सारा पटर गया है।

इसमें केला का पेड़ा लगा हुआ है।

माइक लगा हुआ है और दो घोड़ा है।

इसमें एक आदमी खड़ा हुआ है दो आदमी बैठे हैं।

काफी सारे किताब रखा हुआ है आगे क्रिकेट का बना हुआ है।

यह एक हॉल है हॉल में पंखा लगा हुआ है।

टॉयलेट बना हुआ है एक बीच में एक गेंद है।

यह एक दौड़ का मैदान है इसमें बच्चे दौड़ रहे--

यह एक नदी है नदी पे पूल का रेलिंग बना हुआ है।

यह एक पार्क है पार्क में बुद्ध का फोटो लगा हुआ है।

एक बच्चा लाल रंग का टी_शर्ट बना पहना है एक बच्चा काला रंग का टी_शर्ट पेहना है।

इसमें तकिया लगा हुआ है बेडशीट का रंग वाइट है।

एक बच्चा जींस पहना है दूसरा बच्चा स्कर्ट पहना है और तीसरा बच्चा वाइट कलर का टी_शर्ट पेहना है पीछे पर्दा लगा हुआ है।